यह किसी होटल का व्यू लग रहा है।

यहां बहुत दूर देखने पर एक पीछे इमारत है।

यह कोई कंस्ट्रक्शन का काम दिख रहा है।

यहां एक खिड़की है जिसमें लाल कलर का पर्दा है।

यह किसी शादी का नजारा प्रतीत हो रहा है।

यह घर बहोत सुंदर दिख रहा है।

यहां एक सीढ़ी दिख रही है।

यह बोटलें बहोत महंगी प्रतीत होती है।

जहां कोई काम हो रहा है यहां एक जे_सी_बी दिख रही है।

यहां बहुत सारी मोटरसाइकिल और साइकिल दिख रही हैं।

यह एक प्रशासनिक भवन है जहां ए_सी लगी हुई है।

यहां एक बोलेरो कार दिख रही है यहां एक गार्डन दिख रहा है।